एंड व्हाइट बॉटल्स रखी है।

अंडरवियर एंड ब्लू कलर का टी-शर्ट पहन --

एंड पुरा ब्लैक सूखा-सूखा सा नज --

उम तीन एक बाइक पार्क है यहाँ | दो लड़के उसके उपर बैठे हुए हैं और वहाँ पर दो आदमी खड़े हैं |

लड़का खड़ा हुआ है वाइट कलर की बनियान और ब्लैक पैंट पहने हुए --

अण्ड वहाँ पर एक-अ दादा खड़े हुए है ।

ऐंड यहाँ दो नर्से खड़ी --

ये एक मैदान है ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे लोग खेलते है।

यहाँ पे ये पेंग्विन है जो दो पैरों पे चलता ऐसे --

मीन्स किरणे की दुकाने है यहाँ पर बहोत सारे आइटम्स रखे हुए है।

ये यहाँ पे एक ट्रक के ऊपर आदमी बैठा है |

वूडन कलर के बॉक्स में रखी हुए है।